यह एक कॉलेज का दृश्य है और और जब भी कोई कॉलेज में फनशन होता है तो ऐसे ही भीड़ लगती हैं ऐसे ही डांस - बांस होता है और ऐसे ही पाठी करते हैं और यहां पे जो एतनो भीड़ लगा है तो कोई कॉलेज में फनशन हो रहा होगा इसलिए वहां --

यहाँ एक ऑटो का दुकान है और जब ही य-यहाँ पर ऑटो बिकती है और जब किसी आदमी को ऑटो की जरूरत पड़ती है तो वो ऑटो खरीद के अपना कर देते है और वो उसी से वो अपना वो जो ऑटो जो अपना ऑटो चलते है और अपना कमाई होता है तो इसी ऑटो से उसका घर चलता है और बच्चे खाते --